जन की फोटो मा जी आप देख सकदें की यख मा जी झील कू पाणी छा पिछाड़ी बिटिन आप तें हरयां-भरयां पेड़ पौधा अर बड़ी बड़ी चट्टान बड़ा बड़ा पहाड़ होल दिखेण क मिल लग्यां।

खेती बाड़ी भी होल दिखेण लगीं अगाड़ी बिटिन आप तें बड़ा बड़े चट्टान और पहाड़ भी होल दिखेण क मिल लग्यां एंच बिटिन आप तें सफेद सफेद बादल अर खुल्युं नीलु आसमान आए - हाय।